डिजाइन किया गया है फर्श को।

लोग उतरे हुए वाटर पार्क के अंदर और --

और कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं इनके चारों तरफ

कैंपस है गाइस और कैंपस के अंदर बिलकुल हरा-भरा घास है।